और एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो बैठा हुआ है।

और कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हैं और कुछ बैनरे दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है जिसमें वाइट --